जैसा कि हम देख सकते हैं सामने में हमें बहुत ही सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत ही बढ़िया नजारा दिख रहा है हम देख सकते हैं सामने मे कुछ शीट दिख रही है जो कि नीले कलर कि दिख रही है जो कि बहुत ही बढ़िया शीट दिख रही है जिसके ऊपर हमे कागज के खिलोने बनाये हुए दिख --

ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है सफ़ेद कलर के फूल दिख रहे है लाल और पीले फूल दिख रहे है जो की बहुत ही बढ़िया लग रहे है पीछे टेबल पे भी फूल रखे हुए दिख रहे हैं जो की बहुत सुन्दर दिख रहे हैं बहुत प्यारे दिख रहे हैं नीचे हमको फूल का ढेर पड़ा हुआ दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते सामने हमको लकड़ियों का कुछ सामान दिख रहा है जो की बहुत ही बढ़िया सामान दिख रहा है सामान बहुत ही सूंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है।

यहां पर जो स्लाइड है बहुत ही प्यारी लग रही है हमको यहां पे प्लास्टिक की स्लाइड दिख रही है जो की बहुत ही अच्छी दिख रही है शेड बने हुए दिख रहे है जो लाल और हरे बने दिख रहे है निचे फिसलन पट्टी दिख रही है जो की ऑरेंज और नीली दिख रही है ऊपर आसमान दिख रहा है जो की --

जैसा कि हम देख सकते है सामने मे दो भैंस दिख रही है बहुत ही बढ़िया भैंस दिख रही है भैंस हमको काली काली दिख रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है इनके हमको निचे पाँव दिख रहे है जो की पाने के अंदर धसे दिख रहे है पानी के अंदर हमको नहाती हुई दिख रही है।

चम्मच दिख रही है जो स्टील तीन आइसक्रीम की टूटी फ्रूटी दिख रही है जिस में गुलाबी दिख रही है पिंक दिख रही है येलो दिख रही है।